यह फोटो एक पार्क की है जहाँ ढेर सारे पेड़ पौधे लगाये गए हैं और पार्क के चारो तरफ बाउड्री की गयी है और पार्क में कुछ सुन्दर सुन्दर --

एक बैडमिंटन का स्टेडियम तैयार किया गया है | यहाँ बीच में नेट लगाए गए हैं और दो बच्चे टेनिस खेल रहे --

यह फोटो एक पार्किंग एरिया की है जहां चारो तरफ बाउंड्री की है और एक तरफ बाउंड्री पे लिखा गया है पार्किंग ।